इस फोटो में सामने एक बड़ा सा टोयोटा का शोरूम है जोकि सफेद रंग का है।

इस फोटो में एक बड़ा सा हाल है जिसमें बीच में सजावट किया जा रहा है।

सामने बहुत सारे गुलाबी और सफेद रंग के फूल है।

फोटो में एक बड़ा सा हॉल जैसा है उसमें शीशा लगा हुआ है।

दिवाल पर बहोत सारा रंग किया हुआ है कुछ डिजाइन जैसा लगा हुआ हैं।

इसमें काफी खाने के सामान है और नींबु काट के रखा हुआ है और पनीर है।

सामने बहुत सारी बाइक और बहुत सारे आदमी और औरत लोग भी खड़े हैं।

एक अपार्टमेंट है जो की हल्का लाल टाइप का है।

आसमान का रंग पूरा सफेद है।

फूल का रंग सफेद नीला लाल और पीला है।

पीछे काफी सारे बड़े बड़े हरे रंग के पेड़ हैं।

यहां पे शीशा लगा हुआ है उसी के नीचे एक टाइल्स का दुकान है।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

नीचे से हल्का लाल लाल रंग जैसा है।

सामने काफी सारी बाउंड्री मारा हुआ है उन पर भी बांस से बना काफी अलग अलग तरह का समान है।

सामने एक आदमी खड़ा है जो नीला रंग का गंजी पहना है।

पिलर और जो छज्जा निकला उसका बॉर्डर पे हरा रंग मरा हुआ है।

इस फोटो में सामने एक क्रशर मशीन है जो पीला रंग का है।

बीच में र सेड जैसा कुछ बना हुआ है।

इसमें ऊपर मे कुछ भिंडी के बीज है कुछ करेली के और बगल वाले में कुछ दवा भी है पौधों पर छिड़कने वाला।

दीवार में दो बड़े बड़े पोस्टर हैं एक विश्वकर्मा भगवान का है।

में बहुत सारे सफेद रंग के घोड़े बने हुए हैं।

इस फोटो में एक बड़ा सा रूम है जिसका दीवाल का रंग सफेद है।

रैक पर बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक के बोतल रखे हुए हैं।

एक बड़ा छज्जा है छज्जा का बॉर्डर ऑरेंज रंग का है।

जहां सामने में दो ट्रक खड़े हैं जो की काफी पुराना मॉडल के हैं।

एक का डाला का रंग भूरा है एक का डाला हरा रंग का है।

और उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान रखे हुए हैं।

ऊपर मे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिकस वाला बोर्ड टाँगा हुआ है लाईन वाला।

ये बहुत सारे अलग अलग तरह के सामान भी रखे हुए है।